सामने आप देख रहे है माला है जिसमें कि रंग बिरंगे फूल लगे है जि --

सामने आप देख रहे इधर भी घर है इधर भी घर है इधर पूरा अ इटे का बना हुआ है और उधर देखिये थोडा लोहा भी लगा हुआ है।

की यहाँ पर एक आदमी अ बैठा हुआ है सफ़ेद रंग का शर्ट पहना हुआ है और इधर भी देखिये सफ़ेद रंग का पर्दा टंगा हुआ है और देखिये अगल-बगल सफ़ेद रंग --

सामने देखिये बहोत बड़ी सी बिल्डिंग है और इधर भी घर है और यह इस जो बिल्डिंग है ओ सफ़ेद रंग की है और नीले रंग का इसका खम्बा किया गया है।

एक सफ़ेद है और दो स्लेटी रंग का है और स्लेटी रंग के पास भी एक आदमी खड़ा है जिसने जैकेट पहना हुआ है काले रंग का और काले रंग का पैन्ट पहना है ओ इधर ये देखिये जीप खड़ --

और यहाँ पर देखिये ए.सी लगी हुई है और इधर का देखिये जो अ बैंक का है वहाँ पे देखिये जाली काले रंग की लगी हुई है इधर देखिये पुरे शीशे का दरवाजा लगा हुआ है इधर से देखिये --

सामने देखिये मठ्मिला रास्ता है और इधर देखिये नारंगी थोडा रास्ता जैसे इटे का बुरादा गिरा हो और अगल बगल में देखिये बस है।